ओ यहां पे एक दीवार है जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ है बैठने के लिए जगह भी है यहां पर घा--

घास दिखाई दे रही है सामने एक बिल्डिंग भी है जोकि सफेद और लाल रंग की है।

जिसमें जींस पहनी हुई है जैकेट पहनी और जूते पहने हुए हैं।